बहुत सारी अलग अलग तरह की किताबें रखी हुई है यहां पे बहुत सारी अलग अलग तरह कॉपियां और पेन भी रखी गई है।

यह तस्वीर एक स्कूल की है जिस स्कूल का रंग पिंक है इस स्कूल के ऊपर सोलार भी लगा हुआ है।

यह तस्वीर एक जंगल की है यहां अगल बगल बहुत सारे छोटे बड़े पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं।

यहां पर बहुत सारी अलग अलग तरह के कारीगरी करी गई है। यहां पर बहुत सारे अलग अलग तरह के पेड़ पौधे भी है।

यहां बहुत सारी अलग अलग तरह के टाइल्स रखी गई है यहां टाइल्स से बहुत अलग अलग तरह की समान भी बनाई गई है।

यहां पे टेंपू भी है। नीचे बहुत सारा पानी भी गिरा हुआ है। सामने एक पिंक रंग की ट्रे भी है।

यह तस्वीर एक होटल की है होटल का रंग व्हाइट ग्रीन और ब्राउन है।

यहां पर बहोत सारी कुर्सियां रखी गई है।

यहां पे बहुत सारे गोले गोले झूले लगे हुए हैं।

ऊपर से बिजली की तार भी पार हो रही है।

यहां अगल बगल खेत है।

सामने एक औरत एक बच्चे को लेकर खड़ी है।

यहा पे बहोत सारे पंखे भी है।

ए तस्वीर एक कपड़े की दुकान की है।

यह तस्वीर एक घर के छत बनने की है।

यहां पर एक छोटा सा मंदिर भी बनाया गया है जिस का रंग ऑरेंज है।

पेट्रोल पंप के बगल में एक छोटा सा घर जैसा बनाया गया है जिसका रंग सफेद है।

नीचे टाइल्स भी लगा हुआ है।

बगल में बहुत सारे चेयर भी रखे हुए हैं।

सामने एक बिजली का खंबा भी है।

यहाँ कुछ लोग भी है। अगल बगल गाड़ियां भी लगी हुई है।

होटेल का रंग व्हाइट और रेड है।

यह तस्वीर एक मकान की है।

यहां पर बाइक साइकिल और भी है।

ये तस्वीर एक लोहे की गेट की है जिस गेट का रंग नीला है।

यह तस्वीर एक मैदान की है मै मैदान में बहोत सारी घास भी है।

यहां पर सफेद और लाल कलर से छोटी छोटी घर भी बनाई गई है।

अगल बगल बहुत सारे पेड़ पौधे भी है।

यह तस्वीर एक सड़क की है।

सामने एक सोलार भी रखा हुआ है।

दुकान के ऊपर करकट भी लगा हुआ है।